यहाँ पर हमें एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जो की सजा हुआ दिखाई दे रहा है पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पेड़-उन दिखाई दे रहे हैं घर भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।

बोर्ड टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और शटर भी हमे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ।

एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है वाइट कलर में कार उन दिखाई दे रही है ।